जो किसी कपड़े की दुकान का चित्र जैसा प्रतीत हो रहा है।

और दो कुशन भी रखे हुए हैं।

जो किसी शॉपिंग मॉल का या दुकान का चित्र प्रतीत होता है।

सामने कुछ रंग बिरंगे कपड़ों से डेकोरेशन किया हुआ है और एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है।

ढाबे का चित्र प्रतीत होता है।

यहां पे सोफे रखे हुए हैं टेबल भी रखे हुए हैं और पीछे रेक्स में कुछ कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

इसने लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसपे कुछ सामान रखा हुआ है और पास ही एक पीले रंग का बक्सा भी है जिसमें कुछ सामान है।

जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

सुनार की दुकान का चित्र प्रतीत होता है।

भगवान की प्रतिमा भी नजर आ रही है।

टेबल बिछा हुआ है और उसके साथ ही एक मशीन लगी हुई दिखाई दे रही है सफेद रंग की ऊंची सी मशीन है।

जो थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है इसमें दो गैरेज नुमा--

भी दिखाई दे रहा है और आने जाने के लिए एक रास्ता भी बना हुआ है।

इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं।

इनके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है।